सामने बड़ा सा दो शीशा लगा हुआ है।

जिसमें ढेर सारा एल_ई_डी बल्ब जल रहा है।

सामने एक शैम्पू का बॉटल रखा हुआ है एक टाइल्स लगा हुआ है जो सफ़ेद कलर का है।

टीचर के हाथ में किताब है।

यह एक कंस्ट्रक्शन का फोटो है।

आगे बहोत सारे पेड़ हैं जो काफी हरे भरे हैं।

बाहर कुरकुरे भी टंगे हैं।

यह फोटो में एक बड़ा सा घर है।

बहुत बड़ा चट्टान काट कर बनाया गया है ।

पत्थरों में कुछ लिखा है चॉक से।

नीचे बहोत सारे पत्थर हैं पथरीली जगह है।

ऊपर एक ओवर ब्रिज बना है।

नदी में पानी बहुत साफ सुथरा है।

यह फोटो एक बंदे भवन का है जिसके बाहर बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हैं।

जिसके अंदर लाइट्स लगे हैं बहुत सारे।

रात का मौसम बगल में एक और बिल्डिंग है जहां पे नीला कलर का लाइट लगा है।

जिसके ऊपर जिओ डिजिटल लाइफ लिखा है।

दुकान में बहुत सारा सामान है ।

कम्प्यूटर ऑन है।

यह एक मेफेयर सैलून है और एक मेफेयर लेडीज पार्लर भी है।

सलून के अंदर कुछ आदमी है और पार्लर के भी अंदर है।

एक पानी का टोटी लगा है और बगल में गेट है।

मुंह में मार्क्स लगाए हैं और सर में टोपी लगाए हैं।

लोहे का पाइप लगा है दीवार का कलर सादा है।

दीवार में रेक जैसा बना है जिसमें ढेर सारा सामान रखा है।

यह एक कंस्ट्रक्शन का फोटो है ।

बहुत सारे पटरा है और लकड़ी का समान है।

ऊपर सीलिंग में भी बलूंस सजाया गया है।

लोहे का खम्भा बना है जिसमें एक पोस्टर भी लगा है।

बगल में पीला कलर का भी एक बिल्डिंग --

जिसमें सामान बन के रखता है।

फोटो एक किराना स्टोर का है।

अगल बगल बॉक्स रखे हैं।

यह फोटो में बहुत सारे पर्दे हैं रंग बिरंगे जो कि लोहे का पाइप में टंगा हुआ है।

गेट के नीचे छोटे छोटे दो पौधे लगे हैं।

पीछे एक आदमी दुपट्टे से बांधे हुए हैं।

और उसके अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट का समान है।

अंदर ढेर सारा साबुन है और ऐसे अनेकों सामान रखे हैं।

एक मेम खड़ी है जिनका ड्रेस व्हाइट कलर का है।

बरामदे के खिड़की में लोहे का खिड़कियां है।

गेट को फूलों से सजाया है।

ऊपर फूड बॉक्स का बैनर लगा है।